यहां पर एक मिठाई की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें बहुत अच्छी मिटाई दिखाई दे रही है।

मिल्क केक भी रखा हुआ है और नमकीन भी रखी है गुलदाना भी रखा हुआ है जो देखने बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है।

इसके ऊपर से तारे भी जा रहे हैं और जो देखने को बहुत ही अच्छा लग रहा है।

मुझे ये देखने बहुत अच्छे लग रही है यहां पर बैंगन भी रखे हुए हैं बैंगन बहुत ही अच्छे लगते हैं ।

और इसके चारों तरफ बहोत हरियाली की हुई है ये खेत का फोटो खींचा हुआ है यहां पर पेड़ पौधे बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं बहोत ही प्यारे प्यारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर।

यहां पर मुझको एक तेल पंपा दिखाई दे रहा है और यहां पर एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसका नाम है नजप गढ़--

और बहुत अच्छे यहां पर उसने भी की लाइट बहुत अच्छी लगी हुई है।

जो कि एक लाल कलर के साइकिल है जो कि नीचे से फोटो खींचा गया है।

और उसके सामने कुछ बिल्डिंगें बनाई हुई जो कि रेड कलर की बिल्डिंग है जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है।

और यहां पर चारों तरफ कुछ हरा हरा घास भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पर कुछ लाइनें दिखाई दे रही है जो देखने बहुत ही अच्छी लग रही है बहुत अच्छी तरीके से यहां पर क्रिकेट आप लोग खेल सकते हैं।